देखने मे भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसमे लाईटिंग की भी व्यवस्था की गई हे।

ये कपड़ा दुकान है और ये --

और यहाँ पर लगे है।